एक रोड दिखाई दे रहा है बहोत से पेड़ दिखाई दे रहे--

यहां एक बहुत पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही--

ब्लर दिखाई दे रहा है।

हैं आसमान दिख रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

नीला आसमान दिखाई दे रहा--

कुछ डब्बे दिखाई दे रहे--

और कुछ पौडियां दिख रही है।

और नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

है एक बहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिख रहा हैं।

दे रहे हैं जिन्होंने रेड कलर के--

यह एक दुकान दिखाई दे रही--

एक औरत दिखाई दे रही है।